यहां हमे जूस के ग्लास दिखाई दे रहे हैं।

यहां दुकान में लोग कपड़े लेने आते हैं।

कोचिंग के बाहर बहोत सारी स्कूटियां खड़ी हुई है।

यहां लोग मालो खरीदने आते हैं।

मंडी मे बहोत से प्रकार की सब्जियां भी मिलती है।

मंदिर में लोग पूजा करने जो रहे हैं।

यह एक घर पर फूल पड़ा हो है।

हॉस्पिटल मे इमरजेंसी गेट बना हुआ है।

एक आदमी एक लुगाई से बात कर रहा है।

कलब में डांस करने आते हैं।